एक आदमी औरत ऑटो में बैठ रहा है।

इस पिक्चर में कुछ पौधे क्या पौधा रखा हुआ है।

बोट भी दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

दो दीवार दिखाई दे रहे है और उसका कलर वाइट है।

उस बिल्डिंग का नाम है झांसी भाई पैलेस --

इस इमेज पर दिखाई दे रहा है शादी का फंक्शन हो रहा है।

नीचे जमीन पर पत्थर बड़े छोटे गिरे हुए है।

इसमें टॉयलेट के समान व्हाइट कलर का कम्बड रखा हुआ है।

इस इमेज पे जो दिखाई दे रहा है गेट है।

ऊपर साइड में गोल का एक लॉक लगा हुआ है।

इस इमेज पर एक मंदिर दिखाई दे रहा है।

इसमें कुत्ता और बिल्ली का तस्वीर दिखाई दे रहा है।

नेम प्लेट का नाम है पेट क्लीनिंग एंड शॉप ।

इस पिक्चर में मंदिर दिखाई दे रहा है।